ये पुराने से घर दिख रहे है ये पुराने से ये घर बने हुए टूटे-फूटे से ये टूटे हुए है ये।

नीचे हरियाली हो रही है पेड़ उधर लगे हुए है पीछे भी बड़ा सा पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

पहाड़ी दृश्य दिख रहा है पहाड़ी दिख रही हे ये नीचे जमीन से सामने में बड़ी सी ऊंची-सी पहाड़ियां दिख रही हैं।

यहाँ पर बड़े पेड़ भी लगें हुए हैं बड़ा सुंदर सा द्रिश्य दिखाई दे रहा है।

सामने भी किताबें हुई दिख रही हैं।

यह ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये --

रोड़ के साइड ऑटो गाड़ी दिखाई दे रहा हैं आते जाते।